रोड दिखा रहा हैं चलते रोड के बीच में एक बेरिगेट इसमे दिख रहा हैं उसके सामने एक पूलिया दिख रहा हैं पूलिया के अह सामने मे ये रोड पे ॲटो चालक गाड़िया चलते हुए दिख रहे हैं एक साइट में बजार दिख रहा हैं। कुछ हरे-भरे पेड़ दिख रहे है।

खाली मैदान मे कुछ हरे घाँस के साथ मे बच्चों के खेलने की इन्स्ट्रुमेंट लगाए गए है आजूबाजु मे कुछ सूखे पेड़पौधे दिख रहे है कुछ घाँस समान रोड दिख रहा है धन्यवाद।

ये बीच का एक अ पोजीशन दिखाया गया है अपोजीशन मे यह लोहे का टावर है।

यह एक पार्क का पोर्शन दिख रहा है पार्क के पोर्शन मे लोहे के ऐंगल के साथ मे बच्चों के खेलने के खिलौना दीख रहा है साइड मे कुछ सूखे पेड़ दीख रहे है उसके पीछे कुछ हरे पेड़ दिख रहे है।

यह चलता फिरता रोड दिख रहा है चलती फिरती रोड मे एक वाहन जाते हुए काले कलर का वाहन जाते हुए दिख रहा है कुछ लोग सामने खड़े है धन्यवाद।

उसके सामने का वातावरण एक पहाडी का है दिख रहा है उसके सामने कुछ हरे-भरे पेड़ दिख रहे है कुछ मकाने दिख रहे है कुछ घर दिख रहे है साइड मे एक दीवाल दिख रही है धन्यवाद।

रुपम हेअर पार्लर की बिल्डिंग चारो तरफ से लाइटों से सजाई गयी है।